मुझे यहां दो मंजिले का रेस्टुरेंट दिखाई दे रहा है।

रैक भी नजर आ रहा है जो लकड़ी का बना हुआ है।

मकान में मुझे खिड़कियां भी देखने को नजर आ रही हैं।

एक व्यक्ति खड़ा होके मोबाइल चला रहा है।

और नीचे बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।